ये एक ऑफिस है यहां पे मीटिंग चालू है ये यहां पे टेबल पे ग्लास बॉटल मोबाइल पेन --

अलग अलग टेबल में एक एक चीज दे रहे हैं।

ये बहुत सुंदर सा मीना बाजार आया है यहां का डेकोरेशन भी काफी सुंदर किया गया है यहां पे काफी सारे लोग है।

बोलती थी ये दो सुंदर सा आश्रम है जाना पहचाना आश्रम दिख रहा है।